हमे एक रोड नजर आ रही है साइड में हमें इसमें कुछ पिलर नजर आ रहे हैं मस्जिद जैसी नजर आ रही है एक इसमें लाइट का पिलर है ऊपर बहुत सारे तर गए हुए हैं एक बोर्ड रखा हुआ है।

इसमें एक दुकान भी है जो नीले कलर से पुती हुई है इसमें एक हमें ट्विस्टर भी नज़र आ रहा है जो लाल रंग में--